अ यहाँ पे हमे एक स्टूडियो की पिक नजर आ रही है जहां पे हमे कैमरा हमे दिखाई दे रहा है ऊपर लाइट्स हमे यहाँ दिखाई दे रही है।

यहाँ पे हमें ट्रे शो हो रहे है साइड में हमें मेन्यू कार्ड हमें यहाँ दिखाई दे रहा है देन दो कॉफी कप्स है वो हमें यहाँ पे शो हो रहे है इनके अंदर कॉफी है वो हमें दिखाई दे रही है।